ए एहर एक छोटे मोटे नंदी के बीच बने हुए फूल ए एमा एक ही एक बहुत सारा फूल नजर आवत हावे एमा एहर रोड औ गाड़ी वाला रोड हे वे--

दरवाजा जो है नीला कलर म पोताए हुए हे ओखर साइड हा गली नजर आत हे और म दो खम्भा म खम्भा लगे हुए हे अउ ऊपर म चर्च के निशान हे।

तार वाला डिज़ाइन भी बहुत सूंदर हावे एकर कलर भी बहुत सुन्दर हे यहाँ में बहुत सारे लोग मन बाहर में खड़े हुए नजर आत हे यहाँ जो पेड़-पौधे लगे हे साइड में वो बहुत सुन्दर है।